इसमे बहुत सारा लड़की अपने आप के बारे मे बताता है लड़का भी अपने आप के बारे मे बताता है पढ़ता है बहुत सारा ज्ञान होता है।

ये खरीददारी करने से बहुत सुविधा होगा।

उपलब्ध होता है जिसको भी इस सामान का जरूरी पड़े तो इस दुकान से ले कर जा सकते --

कोई भी मनोकामना लेकेर आते हैं उसको उसका मनोकामना पूरा करते हैं भगवान। सबके पास हैं भगवान। सब पर दया करते हैं। बहुत बहुत दयालु है।

ये एक भवन है। भवन में बहुत सारे आदमी आते हैं मीटिंग करते हैं अपने-अपने समस्या बताते हैं।

लगता है कि यह बस बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर से सजाया भी गया है। देखने में बहुत अच्छा लगता है।

ये एक शो-रूम है। शो-रूम में मोटरसाइकिल बिकता है।